ये बहोत अच्छा सा एक होटल बना हुआ है होटल के अंदर एक बार लग रहा है बार के अंदर--

वो देखो पूरा ली बनता है इस शॉप का कम्पलीट नेम है कर्तार एक्युपरेशन --

बहोत अच्छा सा किड्स का खेलने का एक फंकिट जोन बना हुआ है इसके अन्दर किड्स अपने गेम खेलते है।

मे रेड कलर ब्लू कलर पर्पी कलर ब्लू कलर येलो कलर रेड कलर के अलग अलग गेम जोन बने हुए हैं।

ये एक कोई मॉल का एक शोरूम बना हुआ है शोरूम के अंदर अलग अलग रेट पे डिफरेंट डिफरेंट ब्टीरांड की सर्ट पड़ी है।

पर एक बहोत एक रोड पर एक घरोपेके रास्ते में एक कामरेअमें खड़ा हुआ है वो कैमरे से अलग अलग फोटोस ले रहा है।

फोटोस ले के वो देखना चाह रहा है कि इसकी रोड की मेजरमेंट कितनी है।

एक का कलर ब्लू है एक का रेड है बहोत अच्छे अच्छे स्टाइलिश टेक्टर लग रहे है।

यह एक कोई ढाबे पर मनोज ढाबा नाम से बहोत अच्छा ढाबा खुला हुआ है यहाँ पर एक ऐ--

ये एक बहुत अच्छी स्टाइलिश सी ग्राउंड में बेबी छोटे छोटे बेबीस के लिए एक टॉय ट्रेन चल रही है इस टॉय ट्रेन के लिए बहुत सारे किड एंजॉय --

दवाई लेते हैं इसकी स्टैंड का लुक बहोत यूनिक है इसका कलर ऑरेंज है और इसका ऊपर का रूप का कलर येलो कलर है।

इसका और इस इनर जो इवेंट मेरून है और यह बहोत इस्टाइलिश और बहोत स्मार्ट बोय लग रहा है।

टेंट डेकोरेशन हो रहीं हैं जिसका टेंट का कलर टू टाइप का थ्री टाइप का कलर हैं वन कलर इज ए गोल्डन टाइप कलर सेकंड कलर इज ए रेड कलर ऐन्ड द थर्ड कलर इज ए --

यह एक बहोत अच्छी फ्लावर शॉप की एक शॉप है यह फ्लावर शॉप में बहोत स्टाइलिश स्टाइलिश फ्लावर्स लिखे हुए है।

और इस टेरेस फ्लावर के लिए हर कोई इंटरेस्टेड होता है इन सब फ्लावर्स को लेने के लिए।

हामी आएगा हम्मी आएगा ये एक बोहोत बरासा क्लाउड बना हुआ हे क्लाउड में बोहोत दिन निकला हुआ हे और ये दिन का टाइम हे--

बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं आगे जाके रोड के जाके भी बहुत सारे ट्रीज है जो बहुत अच्छी ग्रीनरी बनी हुई है जिससे बहुत अच्छा लग रहा है।

वासिक लैपटॉप है लैपटॉप में उसका वर्क चल रहा है उसके पास साथ में एक बुक भी रखी है और उसके सामने कोई टेबल भी पड़ी हुई है।

पिंक कलर की ड्रेस बहोत उनपे अच्छी लग रही है वे बहोत अच्छा सा टेंपल लग र--

बहोत बड़े बड़े मौन्टेंस है और मौटेंस के आगे रोड जा रही है और ये कार्स आई थिंक टोटल काउन्तिंग्स में कार्स एक कार इसमे तिउरिस्ट कार है।

ये एक फोटो है जिन्हें तीन लोगों ने एक अपनी फोटो खिंचवा रखी है अलग अलग स्टाइल में ये बॉयज खड़े हुए हैं इन बॉयज का अलग अलग--

टाइप का वेस्टन वियर पहन रखा इन्होने कजोल वियर पहने एक बोय ने ब्लैक टीशर्ट ब्लैक जींस पहनी है बोय ने क्रीम --

पोल के नीचे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है उसके साथ में एक शॉप है। शॉप का नाम डी_जे फ्रेंड्स है।

बहर सप्लायर होता है अलग अलग सिटी में और इस बॉक्स के साथ के कलर ब्राउन कलर का है जिसपे बहोत सारे वाइट कलर के स्टीकर लगे हुए है जिन स्टीकर पे अलग अलग एड्रेसेस लिखे हुए है।

फ्लावर्स लगे हुए है और इसका डोर बहोत ही स्टाइलिश और बहोत ही यूनिक लग रहा है।

और तिन बनेगा यह एक बहोत बड़ा सा एक बहोत स्टाइलिश बंगला लग रहा है।

और बगले कि आइथिंग पूरी स्पेस है आइथिंग फाइव मिनट गल्स अराउंड लग रही है और इस प्योर घर का--

कलर क्रीम कलर हो रहा है यह बहोत ही यूनिक और स्टाइलिश और डेफिनेट यूनिक में घर लग रहां है।

और सारे स्टूडेंट करके स्वीमिंग सीखते है स्वीमिंग इस फॉर गुड फॉर हेल्थ और स्वीमिंग से आपकी हाईट भी इनक्रीस होती है।

और यहा पर वाइट कलर की कार एंड रेड कलर की कार खड़ी हुई है और इसका फ्लोर बहोत ही अच्छा लग रहा है अछि कम्पनी है।

ये एक बहोत बड़ा सा बहोत बड़ा सा ग्राउंड है इस ग्राउंड के अंदर बहोत दूर दूर तक--

ग्रास लगी हुई है। इस ग्रास का कलर बहोत ही अच्छा बहोत ही स्टाइलिश लग रहा है।

ये एक वोटर की टंकी है वोटर की टंकी अ टू टू टंकी है एक कलर क्रीम कलर का है और एक कलर वाइट कलर का टंकी बोहोत अच्छी लगरी है।